उसके बगल में एक हरा कलर का डस्टबिन भी है रात का समय पता चल रहा है।

और पीछे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

तीन सौ साठ सेलोन ए फैमिली सेलोन ऐसा इनके बोर्ड में लिखा हुआ हैं।

अच्छे से समझ नहीं आ रहा है लेकिन सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र ना रामानुजगंज इस टाइप का लिखा हुआ हैं।

जिसे लाल कलर के कलर से पोताई किया गया है और यहाँ एक चिट्ठी डालने वाला बॉक्स भी है।

बहुत सुन्दर फूल के पौधे लगे हुए है जिसमे अभी फूल ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहे है।

बीच में खड़े हुए हैं पूरा स्टेडियम अभी फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है इक्के दुक्के लोग दिखाई पड़ रहे हैं।